इस दृश्य में एक दीवाल बेड दिख रहा है।

व्हाइट ब्लू पहने हुए नजर आ रहा है मशीन दिख रहा है।

ग्रीन कलर के पर्दे दिख रहे हैं।

इस दृश्य में प्लास्टिक से बने हुए संतरे नजर आ रहे हैं।

टमाटर दिख रहे हैं एक आदमी दिख रहा है।

एक लैपटॉप लगाया हुआ दिख रहे है।

बहुत सारे टी_वी दिख रहे हैं इनके रंग ब्लैक है बोर्ड दिख रहे हैं प्लक नजर आ रहे हैं।

दीवार पे चिपकाए हुए पोस्टर नजर आ रहे हैं।

पत्ते दिख रहे हैं सूखे हुए पत्ते नजर आ रहे हैं।

ग्रास दिख रहा है बादल नजर आ रहे हैं।

चप्पल जूते का दिख रहे हैं।

इसमें एक कुर्सी नजर आ रहा है।

बल्ब लगाए हुए दिख रहे हैं।

डूबे दिख रहे हैं पेपर नजर आ रहे हैं बहुत सारे किताब नजर आ रहे हैं।

ब्लैक कलर के डिब्बा नजर आ रहे लाल दिख रहे हैं।

दीवार पर चिपकाए फुल दिख रहे हैं।

पिलर दिख रहे हैं बहुत सारे घर नजर आ रहे हैं।

वीडियो बनाए हुए नजर आ रहे हैं।